सब बेठ कर आपस में बात कर रहे हैं और कुछ लाइट्स भी लगी हुई हैं यहाँ पे।

और सटर लगा हुआ है और एक बिल्डिंग बनी हुई है।

यहा पर बहुत सारी बनी हुई है।

उसने व्हाइट कलर की टॉप और एक लोवर पहन रखा है और यहाँ पर एक जेंट्स जा रहा है उसने चड्डा पहन रखा है और एक डस्टबिन रखा है।

ये कुछ समान रखा हुआ हैं यहाँ पर रबर वैगरा --